मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक घोड़ा और एक भाला लिए हुआ व्यक्ति चढ़ा है इसके ऊपर नाम है लाइवरपूल --

तरसी है वो देखने के लायक है बड़ा ही अच्छा दृश्य हैं यहां पर।

यहां पर मुझे बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है जो दृश्य देखा जाए वह इधर से दृश्य देखने के लायक है मुझे यहां पर एक जलियाँन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है जो दृश्य देखा जाये वह इधर से देखने के लायक है।

यहां पर मुझे एक गार्डन भी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी हरियाली छाई हुई है चारों ओर पेड़ पौधा है।

खींचने वाले ने क्या तस्वीर खींची है? और देखने वाले ने क्या ही देखा है? अच्छी प्रकार से ली गई तस्वीर है बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर मे बहोत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है जो दृश्य देखा जाये वहीं दृश्य देखने को लायक है।

बहुत ही अच्छी लग रही है तस्वीर देखने को बहुत ही अच्छा लग रहा है पेड़ पौधे भी काफी मात्रा में दिखाई दे रही है।

बहुत ही अच्छी प्रकार से सबमिट की गई तस्वीर है।

यहां पर मुझे रेलवे स्टेशन जैसा बस स्टैंड जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है पानी की पीने की सुविधा है पेड़ पौधे भी है कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है।

यह एक घर की तस्वीर है यहां पर मुझे कुछ खिड़कियां भी दिखाई दे रही है एवं दरवाजे भी दिखाई दे रही है बिजली की भी अच्छी सुविधा है पेड़-पौधे भी है।

इस यह तस्वीर बहुत ही अति प्रकार से खींची हुई तस्वीर है।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

देखने के लगा भाई इधर से है यहां पर बहुत ही--

यहां पर मुझे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है आसपास में मुझे कुछ औद्योगिक फैक्ट्रीया भी नजर आ रही है पेड़ पौधे है।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

सफेद रंग के कपड़े पहन रखे है आस पास में मुझे दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई दिखाई दे रही है एवं एक घड़ी भी लगी हुई है।